ई फोटो पर हम तैं एक जे.सी.बी दिखेण लग्युं संतरा रंग कू जू माटु निकालन लग्युं।

भैरम हम ते आटा कु कट्टा भी दिखेण लग्युं।